उसमें पुट्टी ऊट्टी कुछ नहीं हुए। वो बहुत गंदा दिख रहा है। मूर्ति भी बहुत गंदी दिख रही है। मूर्ति की आंख बंद है होंठ मुँह भी बंद है हाथ जुडा--